मोर पंखे भी लगा हुआ--

और इसमें टेबल भी है लाइट लगा हुआ है पंखा भी है और आदमी भी है।

और गाड़ी का पोस्टर भी लगा हुआ है।

और चम्मच भी रखा हुआ है।

इसमें कुर्सी लगा हुआ है टेबल लगा हुआ है।

पर गेट भी लगा हुआ है।

यह एक स्कूल है व्हाइट कलर से पेंट है और रेड कलर भी है।

एक आदमी निचे है एक उपर है एक साइड में--

इसके अंदर बहुत सारे सामान हैं।

बाइक हैं और आदमी हैं।